यहाँ पे एक बिजली का खम्बा भी दिया हुआ है जो की ग्रे कलर मे दिखाई पर रहा है| पीछे एक बडा सा पेड़ भी दिखाई पर रहा है जो की ग्रीन और ब्लैक कलर मे दिखाई पर रहा है| ऊपर असमान का कलर ग्रीन कलर और स्काई ग्रीन कलर मे दिखाई पड रहा है।

सामने बहुत सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं| सभी बच्चे डांस कर रहे हैं| उन्होंने फ्रॉक और श्रग पहनी राखी है| सामने एक प्रदा दिखाई पद रहा है वाइट कलर का | और यहाँ पे ऑरेंज कलर के और ग्रेन कलर के बैलून लगे हुए है| नीचे जमीन पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है।

सामने दो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें एक ग्रीन कलर एक ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है| पीछे दीवार पर्पल कलर की दिखाई पड़ रही है।

सामने एक मकान दिखाई पड़ रहा है जो वाइट रंग का है| यहां पर सीढ़ियां बनी हुई है| यहां पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं| चारों तरफ जो की ब्लैक और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं| यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई है| नीचे जमीन ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है और आसमान वाइट रंग का दिख रहा है।

यहां पर एक रेलवे ट्रैक दिखाई पड़ रहा है| यहां पर एक प्लेटफार्म दिख रहा है| यहां पर जमीन पर ग्रे कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है| सामने एक टेंट जैसा दिख रहा है वहां लाइट चमक रही है।

सामने कुछ प्याज दिखाई पड़ रहा है| सामने तराजू दिख रहा है उसमें कुछ हरि मिर्च दिखाई पड़ रही है| सामने कुछ--

साइड में और भी पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं| यहाँ पे सामने फुटपाथ जैसा दिख रहा है।

और कुछ घास ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है पीछे एक बंगलो बना हुआ है जो कि व्हाइट कलर का दिख रहा है वहां पे एक लाइट का खंभा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है और झूले बने हुए है।

यह कई खंड में बना ऊपर रेलिंग लगा हुआ है जो की ब्लू रंग और ग्रे कलर में दिख पड़ रहा है| साइड मे और भी बाइक खड़ी --

यहाँ पर सिल्वर कलर की सामने साइड रेलिंग लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है और ग्रे कलर का जमीन दिख रही है।